सड़क बनाने के लिए बोहोत सारे गिट्टी बालू सीमेंट रखी हुई है।

यह फोटो एक दुकान की है।

मिथला में बुक सेंटर में बहुत सारे किताबें हैं।

सैलून में हम लोग बाल कटवाने दाढ़ी बनवाने फेशियल मसाज के लिए जाते हैं।

रेस्टोरेंट में खाने नाश्ते का अच्छा बंदोबस्त होता है।

कुछ लेबर लोग लगे हैं।